प्रोग्राम में सजाया गया है। यहाँ पे सेंता कलोथ है। यहाँ पे --

यहाँ पे एक आदमी साइकिल से जा रहा है। .

केक पेस्ट्री आर्डर किया है जो वाइट रंग में और येलो रंग में और क्रीम रंग में दिखाई दे रहा है। .

यहाँ दौड़ने के लिए एक मशीन है और बहुत बड़ा मशीन दिखाई दे रहा है।

नीचे में रेल का पटरी दिखाई दे रहा है।

ये गोल-गोल आकार के खाने में अच्छे लग रहे होंगे अच्छा दिख रहा है। .

ये बिरयानी जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें चम्मच भी है खाने के लिए।

करने की तैयारी कर रहे है। सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए है।

बलरामपुर रोड आदित्य मंगलम के बाजु में ईस्टेट बैंक के बाजु में लिखा हुआ है।